खम्बे लगे हुवे हैं। पेड़ लगे हुवे हैं। बड़े-बड़े पेड़ लगे हुवे हैं।

और यहाँ तार खम्बे दिख रहे हैं ऊपर टॉवर दिख रहा है।

और यहाँ कुर्सी रखी हुई डली हुई है दो-तीन।

यह बहोत बड़ा नजारा दिख रहा है। बहोत ऊंची पहाड़ी बनी हुई है।